लेके आप सब का क्या कह ना है जरा बताई इसमें--

बस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जैसा अह बीस बस को देख पा रहे होंगे इस बस को ले के आपका क्या कहना है जरा देख के बताइए।

पंडरी नगर में किसी चीज के लिए स्थित है।

यहां पे एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

आपका क्या राय है आप जरा इसमें देख के बताइए।

यहां पे सिख धर्म के कम्युनिटी का--

ये एक लड़की हैं और इस लड़की के बाल में काफी सारे बकल्स लगे हुए हैं जो बाल को--

इस डिजाइनिंग को लेके आपका क्या मानना है? इसमें तो काफी अच्छे कलरफुल्स हैं। अन्य प्रकार के भी--

और आप भी इस ब्यूटी पार्लर पे देख रहे होंगे कि ऑलवेज यहाॅं पे बहोत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं आपका क्या मानना हैं?